यहाँ पर बुक किताबो की दुकान है जिस में लाइट जल रही है यहाँ पे पुरानी किताबे मिलती हैं।

यहा शॉप में भी बहुत सारी बुक्स किताबे दिखाई दे रही है यहा पे कुछ लाइट भी जल रही है।

यहाँ पे एक फर्नीचर अलमारी दिखाई दे रही है जहां पे कुछ शैम्पू रखे हुए है।